हमें यहाँ पर लाइटिंग का खम्बा भी दिखाई दे रहा है लाइटिंग भी दिखाई दे रही है| हमें तार दिखाई दे रहा है| हमें यहाँ पर लोग भी दिखाई दे रहे हैं।

हमे एक हॉल दिख रहा है बहुत सारी लोग दिख रहे है डांस करते हुए इन्होने सब ने हरा-हरा पहना है।

हमें यहाँ पर बहुत बड़ा समुद्र दिख रहा है घास दिख रही है आग दिख रही है धुआँ दिख रहा है बॉटल दिख रही है पेड़ दिख रहे हैं--।

और यहाँ पर हमें कुछ-कुछ जगहों पे लाइटिंग भी दिखाई दे रही है हमें यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं नीला आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर धुआँ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है| यहाँ पर एक रोड दिखाई दे रहा है| यहाँ लोग दिखाई दे रहे हैं।

दीवाले दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर हमें बोहोत सारी लाइटें दिखाई दे रही हैं। खिड़कियाॅं दिखाई दे रही हैं। जो मशीनों का कलर है वो येलो ब्लैक ग्रीन रेड है।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

हमे यहाँ पर एक दुकान दिख रही है हमें एक भईया दिख रहे हैं हमें एक सामान दिख रहे हैं हमें बोहोत सी बॉटल्स दिख रही है हमे एक स्टूल दिख रहा है एक टेबल दिख रही है जो की ब्राउन्ड कलर की है।

हमें यहाँ पर लाइटिंग के लाइटिंग भी दिखाई दे रही है हमें यहां पे सफेद बादल भी दिखाई दे रहे हैं।

हमें यहाँ पर समुन्दर के बीचों-बीच एक नाव भी दिख रही है हमें ट्रक्स दिख रहें हैं हमें सफेद कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

हमें जो घर का कलर है जो बिल्डिंग का कलर है वो व्हाइट कलर का है हमें सीढ़ियां भी दिख--